और काफी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है जिसके अंदर होमथिएटर रखे हुए हैं।

और एक बल्ब लगा हुआ है।

यह एक कार है कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक मुर्गी फॉर्म है यहां पर काफी सारे मुर्गे दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारे पास्टर बैठे हुए हैं और बहुत सारे पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे एक डब्बा दिखाई दे रहा है दो फोन दिखाई दे रहे हैं।

और हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।